sample perl program पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम अभी तक कवर किये हुए मुख्य विषयों को सैंपल पर्ल प्रोग्राम में सम्मिलित करना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उपयोग कर सकते हैं
पूर्व आवश्यकताओं में आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए
यदि नही तो हमारी वेबसाइट पर सम्बंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स को देखें
सैंपल पर्ल प्रोग्राम एक क्षेत्र के वेदर फोरकास्ट यानि मौसम के पूर्वानुमान की कई रिपोर्ट्स का आउटपुट देगी
weather dot pm एक मॉड्यूल फाइल है जो इस प्रोग्राम के वांछित डेटा को रखने के लिए एक जटिल डेटा स्ट्रक्चर रखती है
यह रिपोर्ट बनाने के लिए अनेक फंक्शन्स भी रखती है
weather underscore report dot pl वो पर्ल प्रोग्राम है जो वांछित आउटपुट देने के लिए इस मॉड्यूल फाइल को उपयोग कराता है
हमारी वेबसाइट पर इस वीडिओ के नीचे समान कोड फाइल्स उपलब्ध हैं
कोड फाइल लिंक में दी गयी फाइल्स को डाउनलोड और अनज़िप करें
अब अपना सैंपल पर्ल प्रोग्राम weather dot pm देखते हैं
इस प्रोग्राम में कोड का ब्लॉक namespace weather में है
पर्ल पैकेज कीवर्ड प्रयोग करके namespace कार्यान्वित करता है
begin ब्लॉक main प्रोग्राम से पहले कम्पाइल और निष्पादित किया जाता है
export यूज़र के namespace पर मॉड्यूल्स के वेरिएबल्स और फंक्शन्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है
at the rate export और at the rate export underscore ok एक्सपोर्ट ऑपरेशन के दौरान उपयोग हुए दो मेन वेरिएबल्स हैं
at the rate export सबरूटीन्स की सूची और मॉड्यूल के वेरिएबल्स रखता है
ये कॉलर namespace में एक्सपोर्ट किये जायेंगे
at the rate export underscore ok आवश्यकता के अनुसार सिम्बल्स को एक्सपोर्ट करता है
यहाँ मैंने मौसम की रिपोर्ट का आवश्यक डेटा रखने वाले कॉम्प्लेक्स डेटास्ट्रक्टर्स बनाने के लिए references उपयोग किये हैं
$weather_report हैश रेफरेन्स है place और nstate स्केलर वैल्यूज़ रखते हैं
weekly हैश रेफरेन्स का हैश है
* सप्ताह का प्रत्येक दिन चार कीज़ रखता है
record underscore time दो इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ एक array reference है
मेरे पास विभिन्न विकल्पों के मौसम की रिपोर्ट को दिखाने के लिय कुछ सबरूटीन्स हैं
यह फंक्शन हैडर जानकारी जैसे रिपोर्ट प्लेस स्टेट और मौजूदा डेट के हैडर को प्रिंट करता है
अब अगला फंक्शन display underscore daily underscore report देखते हैं
यह फंक्शन वीकडे इनपुट के अनुसार स्क्रीन पर दैनिक रिपोर्ट प्रिंट करता है
हम शिफ्ट फंक्शन प्रयोग करके सबरूटीन में पास किये हुए पैरामीटर को पुनः प्राप्त करते हैं
मैंने पैरामीटर वैल्यू के पूर्वगामी और अनुगामी स्पेसेस को हटाने के लिए trim फंक्शन उपयोग किया है
यहाँ trim फंक्शन के लिए कोड है
lc फंक्शन दिए गए इनपुट का लोअरकेस वर्जन रिटर्न करता है
यह केससेंस्टिविटी को दूर करने में उपयोग होता है
week day जो मेन प्रोग्राम से पैरामीटर की तरह पास होता है वह लोकल वेरिएबल dollar week underscore day को असाइन किया जाता है
निम्न प्रिंट स्टेटमेंट्स निर्दिष्ट वीक डे से सम्बंधित डेटा को प्रिंट करेगा
हम $weather underscore report में एक वैल्यू को डीरेफरेन्स करने के लिए एरो ऑपरेटर प्रयोग कर रहे हैं
जब रेफरेन्सेस के साथ कार्य करते समय हमें उन डेटा टाइप को समझना है जो हम डीरेफरेन्स कर रहे हैं
यदि यह एक हैश है तो हमें कर्ली ब्रैकेट में की key पास करने की ज़रुरत है
यदि यह एक ऐरे है तो हमें इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रयोग करने की ज़रुरत है
पर्ल का रिटर्न फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है
यह मेन प्रोग्राम में फंक्शन के स्टेटस को जाँचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है
अगला फंक्शन write underscore daily underscore report है
यह फंक्शन फाइल में रिपोर्ट आउटपुट प्रिंट करेगा
ग्रेटर देन > सिंबल के साथ ओपन फंक्शन write मोड को परिभाषित करता है
फाइल वीकडे नाम और dot txt एक्सटेंशन के साथ बनाई जाती है
प्रिंट स्टेटमेंट्स फाइल में निर्दिष्ट वीक डे से सम्बंधित डेटा को प्रिंट करेगा
यह साप्ताहिक रिपोर्ट प्रिंट करता है
मैंने हैश रेफरेन्स के प्रत्येक वीकडे को लूपथ्रू करने के लिए एक foreach loop घोषित किया है
मैंने हैश रेफरेन्स को दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स और डीरेफरेन्स के लिए एरो ऑपरेटर प्रयोग किये हैं
मैं हैश की कीज़ को लूपथ्रू करने के लिए कीज़ इनबिल्ट फंक्शन प्रयोग कर रही हूँ
display underscore daily underscore report function हैश के प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट करेगा
अब एक पर्ल प्रोग्राम weather underscore report dot pl देखते हैं जहाँ हम इस मॉड्यूल फाइल weather dot pm को प्रयोग करेंगे
यहाँ use strict और use warnings कम्पाइलर फ्लैग्स हैं जो सामान्य प्रोग्रामिंग गलतियों से बचने में मदद करते हैं
use weather सेमीकोलन यहाँ weather एक मॉड्यूल नाम है जो मैंने इस प्रोग्राम में प्रयोग किया है
हमने पहले ही देखा कि इस प्रोग्राम के लिए आवश्यक फंक्शन्स इस मॉड्यूल में संचित किये गए हैं
यहाँ dot pm फाइल एक्सटेंशन देने की ज़रुरत नहीं है
इस प्रोग्राम में मैं दिए गए विकल्पों के आधार पर भिन्न रिपोर्ट्स प्रिंट करुँगी
यूज़र को निम्न प्रिंट करने के लिए एक विकल्प प्रविष्ट करना है:
अगर विकल्प 1 टाइप होता है तो यह यूज़र से सप्ताह का एक दिन प्रविष्ट करने के लिए कहेगा
diamond ऑपरेटर stdin से पढ़ेगा यानि कीबोर्ड से
उदाहरण के लिए अगर यूज़र monday प्रविष्ट करता है तो यह एक वेरिएबल dollar dayoption को असाइन किया जाता है जो एक लोकल वेरिएबल है
आगे हम देख सकते हैं कि हम दो फंक्शन्स कॉल कर रहे हैं
हमने इस फाइल में use weather स्टेटमेंट के साथ weather dot pm में सारे फंक्शन्स एक्सपोर्ट किये हैं
अतः colon colon :: पैकेज क्वॉलिफायर प्रयोग करके एक पैकेज में फंक्शन्स को उल्लिखित करने की ज़रुरत नहीं होती है
अब अगला विकल्प देखते हैं
अगर विकल्प 2 टाइप किया जाता है तो यह यूज़र से सप्ताह के दिन को प्रविष्ट करने के लिए कहेगा
$dayoption इनपुट पैरामीटर की तरह write underscore daily underscore report फंक्शन को पास किया जाता है
फंक्शन से return वैल्यू dollar result वेरिएबल में संचित की जाती है
प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए टेक्स्ट फाइल जांचने के लिए यूज़र से पूछता है
फाइल नाम सप्ताह के दिन dot txt नामक आउटपुट फाइल के रूप में बनया जाता है
अगर विकल्प 3 टाइप होता है तो यह पूरे सप्ताह के लिए वेदर रिपोर्ट प्रिंट करता है
display underscore weekly underscore report साप्ताहिक रिपोर्ट का फंक्शन नाम है
प्रिंट स्टेटमेंट समय की निर्धारित संख्या के लिए एक क्षैतिज लाइन बनाता है
यह सिर्फ रिपोर्ट को एक अच्छा रुप देने के लिए है
अंततः अगर विकल्प 4 होता है तो यह प्रोग्राम को छोड़ देगा
अगर दिए गए निर्धारित विकल्पों के आलावा कोई अन्य विकल्प दिया जाता है तो प्रिंट स्टेटमेंट कहता है incorrect option
यहाँ 0 की एक्सिट वैल्यू दिखाती है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक रन हुआ
0 के आलावा कोई अन्य एक्सिट वैल्यू का मतलब है किसी प्रकार की एक एरर आई है
अब program को निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें perl weather underscore report dot pl और एंटर दबाएं
हम स्क्रीन पर चार विकल्प देख सकते हैं
टाइप करें 1 और एंटर दबाएं
हमसे सप्ताह का एक दिन प्रविष्ट करने के लिए कहा जाता है मैं टाइप करुँगी monday और एंटर दबाउंगी
यह function display underscore header से उत्पन्न हुआ हैडर आउटपुट है
अब हम मंडे monday की वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं
अब मैं अन्य विकल्पों को दिखाने के लिए दोबारा प्रोग्राम को निष्पादित करुँगी
टाइप करे 2 और एंटर दबाएं
प्रॉम्प्ट पर हमें सप्ताह का कोई भी दिन टाइप करना है मैं टाइप करुँगी wednesday और एंटर दबाउंगी
हम एक मैसेज देख सकते हैं: please check the file wednesday dot txt for report output
आउटपुट इस टेक्स्ट फाइल पर लिखा गया है अब हम वो फाइल खोलते हैं और विषय वस्तु जांचते हैं
टाइप करें: gedit wednesday dot txt और एंटर दबाएं
आउटपुट फाइल प्रविष्ट सप्ताह के दिन के साथ txt एक्सटेंशन से बनाई गयी है
अब अगला विकल्प जांचते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: perl weather underscore report dot pl और एंटर दबाएं
टाइप करें 3 और एंटर दबाएं
इस समय हम साप्ताहिक वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं
हैश कीज़ और हैश वैल्यूज़ यादृच्छिक क्रम में संचित किये जाते हैं
अतः प्रदर्शित आउटपुट उस क्रम से सम्बंधित नहीं होता है जिसमें वे जोड़े गए थे
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स के मुख्य विषयों को कवर करके सैंपल पर्ल प्रोग्राम देखा
एक नियत कार्य में एम्प्लॉई की सैलरी पद का नाम डेसिग्नेशन विभाग डिपार्टमेंट लीव_बैलेंस जानकारियां दिखाने के लिए एक वैसा ही पर्ल प्रोग्राम employee underscore reportpl लिखें
इनपुट की तरह employee id या employee name पास करें
मॉड्यूल employee dot pm फाइल में आवश्यक फंक्शन्स लिखें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
हम कार्यशालाएं चलाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict द्वारा निधिबद्ध है इस मिशन पर अधिक जानकरी इस लिंक पर उपलब्ध है